इस फोटो में एक मकान देखी जा सकती है।

मकान का कलर नीले रंग का है।

यहां बहोत सारा सामान देखा जा सकता है।

सामान रखने की जगह भूरे रंग की है।

दीवाल सफेद रंग की है।

एक बाइक लगी हुई देखी जा सकती है।

एक नारंगी रंग का शटर देखा जा सकता है।

खाली जमीन भी देखी जा सकती है।

दो मकाने देखी जा सकती हैं।

दूसरे मकान का रंग भूरा है।

बहोत सारे चिप्स देखे जा सकते हैं।

आसमान साफ है और बादल नहीं हैं।

बहुत सारे पेड़ देखे जा सकते हैं।

इस फोटो में एक नदी देखी जा सकती है।

होटल का काउंटर देखा जा सकता है होटल की दीवार देखी जा सकती है।

आसपास पेड़ देखे जा सकते हैं।

नीले रंग के पर्दे देखे जा सकते हैं।

बोर्ड में अप्सरा लिखा हुआ है।

कुछ बैटरीस देखी जा सकती हैं।

यह एक सीढ़ी की तस्वीर है।

चार लोग देखे जा सकते हैं।

मकान की छत भूरे रंग की है।

इसकी कारीगरी तिब्बतीयन स्टाइल की है।